एक बत्तख का झुंड का फोटो है जो बहोत ही अच्छा लग रहा है देखने में और कलर भी बहोत ही अच्छा लग रहा है जो एक झुंड में खड़े हैं सारे बत्तख देखने में बहोत ही अच्छी लग रहे हैं ।

ये एक स्कूल की पिक्चर लग रही है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

यह एक कॉलेज है एग्जाम वगैरा चल रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है।

टेक्निकली बहोत ही अच्छा लग रहा है देखने में एक पंखा भी लगा हुआ है ये बंदा कॉफी सर्व कर रहा है ।

चेयर वगैरह भी लगी हुई है।